यहह पर काफी साफ पानी होता है और हम लोग यहाँ पर तहरना भी सीखते हैं।

यहाँ पर हमारी गाड़ियों में पेट्रोल डीजल डाला जाता है। जिससे हमारी गाड़ियां चलती हैं और हम अपनी रस्ता या फिर अपने सफर को तय करते हैं। गाड़ियां बिना पेट्रोल डीजल के नहीं चल सकती।